फीलिंग सिस्टम का बोर्ड लगा हुआ है।

इसमें काफी बड़ी सी--

का बोर्ड लगा हुआ है।

ये मॉल की तस्वीर है।

यहां पर अलग अलग--

ये क्रेन नहर में से--

फाइल्स भी रखी हुई हैं।

पेडिग्री टेस्टी बाइट पे--

ये लोग होटल में बैठे--

भिंडी काकड़ी बेंगन प्याज--

तीन फुटबॉल्स पड़े है।

शर्ट्स रखे हुए हैं ऊपर ए_सी भी--